ये दोनों तरफ का हमें हरियाली नजर आ रही है एक सामने मकान बना हुआ है।

और दरवाजे और खिड़कियां कुछ सामान रखा हुआ है कुछ बोरियां रखी है और यह बिल्डिंग बहुत ही अच्छे से सजाई गई है।

जो लोग होते हैं उनके जो कहा जाता है फादर जो पादरी कहा जाता है वो खड़े हुए हैं और लोग प्रेयर कर रहे हैं।

नजर आ रहे हैं बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है अ उस पर ज्यादा रंगाई--

इस व तस्वीर में हमें एक अ बिस्तर नजर आ रहा है साफ सुथरा एक अ सफेद अ तकिए और सफेद चादर।

जिसमें अ सलीके से हर चीज रखी हुई है एक अलमारी रखी हुई है।

इसमें हम देख रहे हैं कि एक सड़क किनारे एक साइकिल और एक बाइक खड़ी हुई है और एक बड़ी सी दुकान जो हमारे रोजमर्रा के सामान--

अ जहाँ पर गाड़ियां देखने जाते हैं अ गाड़ियों की डील हो हो रही होती है वहाँ पर ये खड़े हुए हैं दो ऑटो हैं।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा अ टावर जैसा यह बिल्डिंग बना हुआ है अ पास में एक सफेद कलर --

अ कच्चा मकान भी बना हुआ है इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कच्ची दीवार और गिट्टियां भरी हुई एक गाड़ी ट्रॉली जो खड़ी हुई है।

ये दृश्य है जब बाहर अह जो मैदान होता है बड़े से मैदान में खेल रहे है बहोत सारे लोग।

इसमें हमें दिखाई दे रही है एक बड़ी सी अह ये शॉप है अह बड़ी सी दुकान है उसमें कई सारा सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां ये खड़े हुए हैं और मास्क लगाए हैं कुछ मास्क नहीं भी लगाए हैं।

बिल्डिंग के बाहर टाइल्स लगा हुआ है और उस पर बोर्ड लगा हुआ है अ हरे हरेंद्र किशोर मिश्र।

पास ही में और पन्निया भी पॉलीथिन कुछ रखी हैं वो भी पैक हैं ये कोई समान बरा बरा है जो पैक रखा हुआ है उनके पास।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

का होता है वो पत्थर पथरीला ये जगह है पत्थर पड़े हुए हैं।

अ बड़ी सी इसमें काम कर रहे हैं कारखाने के अंदर।

अ घासें आसपास पेड़ लगे हुए हैं और उसके बीचों बीच यह छोटा सा एक मंदिर जैसा बना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दुकान नजर आ रही है जिसके अंदर बच्चों के खिलौने रखे हुए--

ये एक दुकान का अह दृश्य है यहां पर अह हार्डवेयर ट्रेडर्स एंड --

और अ इसमें काफी बच्चों की चीज वगैरह और आगे इसके जो है मिठाइयां रखी हुई हैं।